काफी डेनजर्स होती है यहाँ पे एक थमसप की बोतल पड़ी है यहाँ पे जो बाउंड्री के नीचे है और यहाँ पर सामने जंगल ही जंगल पड़ा हुआ है यहाँ पे काफी सारे--

यहाँ पहाड़ के नीचे पानी जा रहा है यहाँ काफी बड़ा ऊँचा पहाड़ है यहाँ पे काफी सारे लोग भी गाँव बसा जा रहा है साइड मे यहाँ पर पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर ये एक यहाँ पर एक शेड डाला हुआ हेयहाँ पर दो तीन और यहाँ पर पेड़ लगे हुए है यहाँ पर दो लड़के बेग टंग कर जा रहे है।

लॉन्ग ड्राइव के लिए काफी अच्छी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है महिंद्रा की सबसे हेवी गाड़ी है ये बुलेरो -बुलेरो और काफी अच्छी गाड़ी है बुलेरो और बुलेरो व्हाइट कलर की --

और ये काफी हरियाली-हरियाली हो रही है यहाँ पर पर काफी ज्यादा पेड़-पेड़ लगे है यहाँ पर एक ऊपर पर्वत बंधा हुआ है यहाँ पर एक नीचे भी वो बने हुए है।

--और यहां पर ये आस पास वो लगा हुआ है सेड और ये पूजा का सामान रखा हुआ है यहाँ गिलास कटोरी यहां पर सामान रखा हुआ है। यहां पर गुलाबी कलर की--

मंडी का है जहाँ पे मंडी के अंदर सब्जिया रखी हुई है आसपास सब्जिया फल फ्रूट वगेरा रखे हुए है यहाँ काफी बड़ी मंडी है और यहाँ पर मंडी के नीचे यहाँ पे छोटे--

गेट नंबर चार है यहां पर चार नंबर के गेट है यहां पर काफी पेड़ सजाये गए है यहां पर लाइटिंग लगी हुए है यहां पर एक बड़ी लाइट लगी हुए है स्ट्रीट और यहां पर काफी लोग पूजा के लिए आ रहे है।